ये एक जुलुस निकल रहा है टावर चौक के पास। यहां पे बहोत ज्यादा भीड़ है।

और आस-पास बहोत सारे दुकानें हैं और घर बने हुए हैं और इस जुलुस में बहोत ज्यादा भीड़ नज़र आ रही है।

यहां पे प्लेटफार्म पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे है।

जो गाड़ी पे आ आने का इंतजार कर रहे हैं और प्लेटफार्म में कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं।

ये एक स्कूल है डी_ए _वी पब्लिक स्कूल जहानाबाद का डी_ए _वी पब्लिक स्कूल पूरे बिहार में बहोत फेमस है ।

ये जहानाबाद कॉलेज है जहानाबाद का ये एक सरकारी कॉलेज है यहाँ पे प्लस टू तक की पढ़ाई होती है और इंटर मैट्रिक के सेंटर भी आते हैं बिहार बोर्ड के।